सामने हमे कैफै नजर आ रहा है अ और एक आदमी अंदर क खड़ा हुआ है कैफै के अंदर अ और एक आदमी बाहर से खड़ा बात करता हुआ नजर आ रहा कैफै मे टेबल रखा हुआ है कुर्सी भी रखा हुआ है घड़ी भी लगी हुई है सामने |

ग्रीन कलर का बाहर मैट लगा हुआ है। एक काले कलर का स्पीकर रखा हुआ है। स्पीकर के ऊपर बहुत सारे पीले कलर के बलून रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और ऊपर गैलरी बनी हुई है और यहाँ पर दो लड़कियां हमे नजर आ रही है कैफे के बाहर सेल्फी लेते हुए और नजर आ रही है। एक लडकी के हाथ में फोन है। एक लड़की पीछे खड़ी हुई है।

बाहर एक बहुत ही बड़ा खम्भा लगा हुआ। जिसमें वायर लगे हुए हैं। वहाँ सब बहुत सारी बाइक और गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है।